यहाँ एक चौक जैसा बनाया हुआ है यहाँ एक गोल्डन कलर की इसी के नाम पे चौक बनाया हुआ --

आसमान साफ है जगह जमीन बहुत ही ज्यादा लग रहा है साफ ही साफ है पेड़-पोधे काफी ज्यादा है ।

लग रहा है ये जाके ट्रान्सफ़ॉर्मर है इधर उधर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ पर्यावरण दूषित से बचाता एक आदमी अपने घर पे का --

यह घर है यहाँ दो पेड़ है यहाँ बहुत ही बड़ा घर है आस पास के काफी मौसम लग रहा है कि वो साफ़ है लेकिन साफ़ नहीं है।

याहा बाइक काफी ज्यादा खड़ी हुई है। याहा याहा आर्मी भी काफी है। भीड़ भी काफी है। याहा मास्क की जरूरत है। लेकिन मास्क का यूज कोई नहीं कर राहा।

नि जज्बा को दिखाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छा है। यह यह एक बहोत ही अच्छा साथ आदमी खेल रहे हैं।